यह एक पोखरा है । यह पोखरा पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है और यह पोखरा चारो तरफ से एकदम से घिरा हुआ है ।

यह एक मंदिर है । जिसकी बाहर में एक खाली जगह है । इस जगह पर बहुत सारे हम्म लोग इकठा हुए हैं और यह पे बोहोत सारे झंडे भी लगे हुए हैं ।